यह एक जानवरों का अस्पताल है जहां पे दो डॉक्टर एक कुत्ते की सर्जरी कर रहे हैं संभवतः कुत्ते को चोट लग गई है।

बच्चों के खेलने वाला रूफ वे भी बना हुआ है।

इनमें कई तरह की किताबें रखी हुई हैं जैसे इंजीनियरिंग की डाक्टरी की और बहुत से लोग इन किताबो को देख एवं खरीद रहे हैं।

जहां पे चांदी के बने हुए --

यहां पे एक स्टेज बना हुआ है जिस पर दुल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं तथा शादी और पार्टी में आए गए व्यक्तिगत कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

यहाँ लाइटों की व्यवस्था बहुत ही सुंदर एवमं आकर्षक है। यहाँ पे डी.जे का भी व्यवस्था किया गया --

मैट पर बैठ कर करते हैं।

साथ में एक व्यक्ति इस रिक्शे के पास खड़ --

एक पार्क है जिस पार्क में एक लड़का झूले पर बैठकर झूला झूल रहा है यह झूला लोहे की पाइपों में लगा हुआ है।

इस पाइप का को काले और पीले रंग में रंगा गया है। इस पार्क की बाउंड्री बहोत ही सुंदर बनी हुई है। इस में लोहे के ग्रिल भी लगे हुए हैं। साथ में एक बहोत पुराना यूकेलिपटस का पेड़ भी है।

संभवत यह ऑफिस अभी जल्दी ही ओपन हुआ है क्योंकि इन कुर्सियों की पन्नी अभी फटी नहीं है।

यह प्राइवेट बस स्टैंड है यहां पे बहुत सी बस खड़ी हुई हैं और कुछ यात्री भी बस में बैठने की तैयारी कर रहे हैं।

यह हाजीपुर रेलवे स्टेशन है जिसका नाम हाजीपुर जंक्शन है ये बिहार में पड़ता है यहां पे काफी सारे रिक्शे खड़े बाहर खड़े हुए हैं।